और यहां पर गुब्बारे भी लगाए गए हैं और ये बहुत ही सुंदर दृश्य है ।

यहां पर बहुत सारे लोग हैं जो नाव में शेयर कर रहे हैं ।

छह नाव दिखाई दे रही हैं जिसमें दो-दो व्यक्ति बैठे हुए हैं और दो--

दृश्य है यहां पर एक आदमी खड़ा हुआ है जो चश्मा लगाया हुआ है और उसने नीले रंग के कपड़े पहने हुए हैं और जूता पहना हुआ है ।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

हमें दिखाई दे रही हैं बाकी पीछे बहुत सारी बसें हैं ।

और मेजें रखी हुई हैं यहां पर--

खड़े हुए हैं और एक महिला भी है और कुछ पुरुष हैं ।